आसमान देख रहा है और यहां पे आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली देख रही है।

और यहां पे आप देख सकते हो एक दिख रही है और यहां पे ये सफेद है।

यहां पे लाइट दिख रही है यहां पे आप देख सकते हो देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

मैट लगी हुई हैं और यहां पर आप देख सकते हो--

ये यहां पे देख सकते हो ये यहां पे गर्मी सर्दी के कपड़े भी दिख रहे हैं ये यहां पे देख सकते हो ये --

और यहां पे लाउड लाउडस्पीकर भी दिख रहे हैं यहां पर--

लिखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो आसमान भी दिख रहा हैं।

और यहां पे ये पानी का डम टै टैंकर भी रखा हुआ है।

और यहां पे ये कुर्सियां रखी हुई हैं कुर्सियों का रंग नीला रंग है।

और यहां पे हरी हरी घास भी दिख रही है।

और यहां पे ये फोटो खींचने के लिए कैमरा सा होता है वो भी यहां पर रखा हुआ है यहां पे आप देख सक--

और यहां पे हरियाली हरियाली दिख रही है और यहां ले आप देख सकते हो।

यहां पे ये कपड़े की दुकान है। यहां पे आप देख सकते हो आदमी खड़ा हुआ है।